और वही मुर्ति उनकी वहाँ पर बनी हुई है और ये मन्दिर की दानपेटी भी यहाँ पर रखी हुई है जिसमें की ताला है।